बैंक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर में वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है नीचे कुछ पारदर्शी शीशे लगे हुआ दिखाई दे रहे है एंड नीचे की तरफ में --

सामने एक लड़के को देखा जा सकता है जिसने जैकेट पहन रखी है चश्मा लगा रखा है और वो फोटो क्लिक करवाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहे है मंदिर के तीन गुम्बज भी देखे जा सकते है अगल बगल में कई लोगो को आते जाते हुवे दिखाई दे रहा है दिखाई देखा जा सकता है।

सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने बुढ़िया के बाल बेच र बेचते है।

कुछ लोगों को भी आप बैठे हुए देखा जा सकता है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं यह रात्रि का समय है --

यहाँ पर एक स्कूटर खड़ी हुई है जिसकी दूसरी तरफ में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए देखे जा सकते हैं ऊपर में नीला आकास है सामने एक बड़ा सा --

खंबा जैसा कुछ आया हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पोल लगा हुआ है और यहाँ पर रोड भी रोड चलती हुई नजर आ रही है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है।

और यह जो रोड है इसे सरकारी ईंटों से बिछा कर के बनाया गया है।

यहाँ पर एक ए फॉल होता हुवा देखा जा सकता है एक यहाँ पर अगल बगल में चट्टाने दिखाई दे रही है सामने की चट्टाण से कूछ पानी गिर --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

यहाँ पर एक स्लाइडर बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर का है जिस पे से एक छोटी सी बच्ची स्लाइड करके नीचे आई हुई है।

लोगों के बैठने के लिए बहुत सारी चेयर्स वगैरह बना कर के रखी गई है ऊपर में नीला आकाश है जिस पे बहुत सारे खंबे जैसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एन्ड सामने एक पेड़ को भी देखा जा सकता है लाइट की तारे जाति हुई नजर आ रही है यह बिल्डिंग जो है वह रेड कलर की नजर आ रही है।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

यहाँ पर नीला आकास भी देखा जा सकता है नीचे पानी भी दिखाई दे रहा है और सामने में कुछ टापू पर कुछ घास वगैरह भी देखी जा सकती है।

और उसके दूसरी तरफ में कुछ यहाँ पे रोशनी आती हुई देखी जा सकती है कुछ लोग है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सामने बहुत सारे लोहे के यंत्र रखे हुए हैं --

यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है दरअसल यह एक इंट्री गेट है दो इंट्री गेट बनाए गए हैं --

और उसके बीच के खंभे पे बहुत बड़ा सा कुछ बनाया गया है कुछ सिंबल बनाया गया है कुछ लिखा हुआ है।

अगल-बगल में कुछ गेटों को देखा जा सकता है जो कि लोहे की बनी हुई नजर आ रही है।